और मंदिर को बहुत ही सुन्दर तरीके से फूलों से सजाया गया है मंदिर के चारों तरफ लोहे बहोत ही अ--

और कुछ बेडशीट रखी है जो एक के ऊपर एक रखी है और भी सामान है साइड में--

एक दीवार में एक बड़े बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बहोत सारे लाइट लगी हुई है।

दूसरी तरफ भी बाइक खड़ी है। पीछे की तरफ बहुत से बड़े-बड़े पेड़ लगे हैं।

यहां पर एक घर है और घर का कलर सफेद और लाल कलर का है।

यहां पर एक भगवान कृष्ण की सफेद कलर की मूर्ति रखी है जो बहुत ही सुंदर है।

पीछे की तरफ कुछ गोलाकार आकृति में बनी हुई दीवार है जिसमें बहोत सारे डॉट्स बने हुए ब्राउन कलर --

यहां पर बहुत सारे गोलाकार आकृति के डिजाइंस में सीमेंट और लोहे के--

यहां पर एक बैंक ऑफ़ बड़ौदा का वाइट कलर का पोस्टर लगा है जिस पर रेड कलर से लिखा हुआ है।

और सामने की तरफ एक टेबल रखी है जिस पर एक कंप्यूटर रखा है।